इस चित्र मे भी घने घने हरी घास घना बड़ा बड़े बड़े पेड--

चित्र में एक बड़ा बरामदा दिख रहा है एक तरफ दिवारे दरवाजे और खिड़कियाँ दिख रही है।

चित्र मे एक मस्जिद दिखाई दे रही है। मस्जिद के मिनारे दिखाई दे रहे है।